जिनसे बैडमिंटन खेलने से लोगो का मन तारो ताज़ा रहता है और शरीर भी स्वस्थ रहती है।

और ऊपर भी लोहे की रेल रेलिंग और लोहे की गेट दी गई है जो कि इसकी खूबसूरती बढ़ा रहे हैं।

जिम का वर्क आउट करते है और अपने मसल्स को मजबूत करते है।

इसमें कुछ लोग ही समुंदर पार कर सकते हैं।